आगे की और कुछ रैक भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोहे से बने हुए टावर भी दिखाई दे रहे हैं।

एक अंकल यहां पर बैठे हुए हैं नीले रंग का जो है।

ठीक है और यहां पर सूट्स वगैर लगे हैं बाहर पोस्टर लगा हुआ है की न्यू अराइवल --